एक अ एक चीज पर बहोत ही ज्यादा फूल की मलाये टंगी हुई हैं और कुछ लोग उसके साथ फोटो भी ले रहे है कुछ लोग उसका लुतुफ भी उठा रहे हैं ।

आप देख सकते है एक बच्चा भाग रहा है तो दूजा बच्चा उसको पकड़ रहा हैऔर कुछ बच्चे उधर घास के ऊपर बैठे है ।

आसपास का मौसम भी काफी अच्छा दिख रहा है हर हर तरफ हमें फूल ही फूल गेंदे के फूल गुलाब के फूल सभी तरह वही फुल दिख रहे हैं आसमान भी बहुत अच्छा है यह पार्ट --

हमें इस तस्वीर में एक व्यक्ति एक पलंग के ऊपर लेटा हुआ दिख रहा है आप देख सकते है इस व्यक्ति ने कहीं तरह की चांदी की अंगुठिया पहन रखी है।